एक हरे रंग की के काले रंग की--

और बैठेने के लिये एक टेबल भी दिखाई दे रहा है दूर पे एक व्यक्ति जाता हुआ भी नजर आ रहा है।

छोटे छोटे तरीको के पेड़ दिखाई दे रहे है झरने के ऊपर भी हम देखे तो बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है बड़े बड़े विशाल पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

और हम देख सकते है की यहाँ पे कुरकुरे चिप्स की पैकेट लटकती हुई नजर आ रही --

यहाँ पर हम देख सकते है की हमें इमारत नजर आ रही है जो की सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है हम देख सकते है की इसका काम चालू नजर आ रहा है।

हम देख सकते है यहाँ पे बड़ा बिग बाजार का बोर्ड लगाया गया है नीचे कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं।

हम देख सकते है की नीला बैनर नीली बकेट में पानी भर के उस के अंदर मछलियां दिखाई दे रही है हम देख सकते है की सामने --

लाल गुब्बारों से सजावट की गई है दिखा रही है हम देख सकते है की बहतु सारी महिलाये और पुरुष छोटे बच्चे दिखाई दे रहै है।

यहाँ हम देख सकते है जाली लगी हुई जो काले रंग की है जाली के अंदर हम देख सकते है की एक हिरन खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

ज़्यादातर महिलाओं टी शर्ट लेगींस पहनी हुई दिखाई दे रही है एक महिला ने --

अतः हम देख सकते है कि एक बड़ा बोर्ड है जोकि सफेद रंग का है उसके ऊपर अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा गया है जिसे की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया --

गुड पीपल टू बैंक विथ और हम देख सकते है की नीचे लिखा गया है मंडे टू --

अउ ये अंगूर हरे अंगूर भी दिखाई --

सामने ही एक वेन भी खड़ी हुई ही है इन गाड़ीयो के बिच। ऊपर हम दीवार देखे तो सफ़ेद रंग की नजर आ रही है और वर के--

लाल रंग की सफ़ेद रंग की नजर आ रही है उनके पास में ही बड़े - बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है --